इस चित्र में जो सड़क दिख रही है इस सड़क पर कुछ बाइके दिख रही है कुछ कारे दिख रही है इस सड़क के आस पास कुछ दुकाने भी दिख रही है और कुछ बैंक दिख रही है।

और इस ब्रिज के आस पास कुछ लोग भी दिख रहे है कुछ गाड़िया और कुछ ट्रक भी दिख रहे है और कुछ पेड़ भी दिख रहे है।

इस चित्र मै जो बैंक कि बिल्डिंग दिख रही है इस बिल्डिंग पर जो कलर पुता हुआ है व्हाइट और गोल्डन है इस बैंक के आस पास जो बोर्ड लगे हुए है वो येल्लो ब्लू और कुछ व्हाइट कलर के दिख रहे है।

इस चित्र में जो बिल्डिंग दिख रही है इस बिल्डिंगो पर जो कलर पोता हुआ है वो ग्रे ब्लैक पर्पल और ग्रीन कलर है इन बिल्डिंगो के आस पास कुछ गाड़ीया और कुछ कारे भी खड़ी हुई है।

इस चित्र मे जो तालाब दिख रहा है इस तालाब का जो पानी है वो ग्रे कलर का दिख रहा है।

कलर है इस बिल्डिंग के आस पास कुछ और गेट और शटर भी लगा हुआ है इस बिल्डिंग के अंदर कुछ ब्लैक ग्रीन और ब्राउन भी कलर का दिख रहा है इस बिल्डिंग के आस पास कुछ गाड़िया भी खड़ी हुई है।

इस सड़क पर कुछ गाड़िया भी दिख रही है और कुछ लोग भी दिख रहे है इस सड़क के आस पास लाइट और बिजली के खंबे भी दिख रहे है और कुछ बोर्ड भी लगे हुए है।

इस चित्र में जो मस्जिद दिख रही है इसके आस पास जो कलर पुता हुआ है वो ब्राऊन व्हाइट और ग्रीन और कुछ गोल्डन कलर सा पुता हुआ है इस मस्जिद के आस पास झंडे भी लगे हुए है जो ग्रीन कलर के है।

ग्रीन कलर के झंडे भी लगे हुए है उस मस्जिद को डेकोरैट भी किया गया है।

सर्किट लगी हुई है कुछ माला लगी हुई है इसके आस पास कुछ लोग भी दिख रहे है और इस मस्जिद के अंदर कुछ ब्लू ब्लू सा भी दिख रहा है।

और जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो ऑरेंज व्हाइट ब्राउन और कुछ ब्लैक कलर के दिख रहे हैं और उनके हाथों में कुछ सामान भी है।